वेज नॉन वेज हर प्रकार से भोजन मिलते है पे वो सारे लोग जाते हैं खाना खाने के लिए ।

क्रिस्चियन धर्म के लोग जाते हैं इस चर्च में। यहाँ पे ईशा मसीह का --

विद्यार्थी जातें है किताब कॉपी खरीदने के लिए यहाँ पे हर प्रकार के किताब कॉपी मिलते हैं।

फोटो दिखाए गए हैं और यहाँ पे --

यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और मार्केट में हर तरह के समान मिलते हैं। मार्केट में --